यह एक रोड़ का पिक है शाम का समय है एक बाईक वाला खड़ा हुआ है सामने एक कार जा रही है और एक लैंप लगा हुआ है।